इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आपको एक इंजीनियर लड़का खड़ा नजर आ रहा है जिसने वाइट कलर का शर्ट और चश्मा लगाया हुआ है।

इस फोटो में आप देख सकते हैं आपको एक स्टील की प्लेट नजर आ रही है और आपको एक छोटी स्टील की प्लेट नजर आ रही है एक --

एक प्लेट में आपको पराठा रखा हुआ नजर आ रहा है और एक प्लेट में आपको आलू और बटली की सब्जी नजर आ रही है।